यहाँ इतनी सारी आंटियाँ योगा करने आई हैं।

कुछ झंडे में लेस्ते हुए देखो झंडा दिखा रहे है। किनारे के निकलते निकलते झंडा आ रहा है। उसके बाजू में पेड़ पौधे खड़े हुए है और इंसान भी सामने खड़े हुए है।

मंडी में आ गए मंडी में क्या-क्या मिलता है? हरी प्याज मूली गाजर खिया फूल गोभी आलू --

एक बाइक खड़ी है। ती चार बाइक है और एक कार है व्हाइट कलर की। एक ललकि पैर से खड़ी है।

झंडे पाँच छः झंडे है और --